है कुर्सी लगा हुआ है। गिटार है। बहोत ही सुन्दर है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं और एक बहुत अच्छी लकड़ी गा रही है।

अम मूर्ति हैं तीन को जो कि गेम है। बहोत ही सुन्दर मूर्ति हैं। यहाँ पे लोग पूजा करते हैं। बहोत ही सुन्दर मूर्ति है।

आके पूजा कर सकते हैं और बहोत ही सुन्दर मन्दिर है जैसे लगता है सोना का बना हुआ है। बगल में पुल है जो एक --.